पर कुछ अच्छा नहीं लगता है बात नहीं है।

तो बकरियों में झगड़ा ना हो अरे ये तो भेड़ बकरी तो झगड़ा तो करेंगी ही।